यह एक बहुत बड़ा बिल्डिंग है बिल्डिंग में बहुत सारा दरवाजा बनाया गया।

बहुत सारा खिड़की भी बनाया गया है और बाहर में लाइट भी लगाया गया है।

बाहर में गाडी रखा गया है और रोड़ भी दिखाई दे रहा है।

पानी हरा रंग का दिखाई दे रहा है और यहां पे पाइप भी बिछाया गया है।

रूम में बोर्ड भी लगाया गया है रूम में बाल्टी रखा गया है।

यह एक कार है कार का रंग काला है और कार मे चक्का भी लगाया गया है।

यह एक मंदिर है मंदिर का दीवार भूरा है यहां पे मूर्ति रखा गया है।

खेत में पानी भी पटाया गया है और यहां पे खेत के बगल में झाड़ी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे चटाई भी बिछाया गया है और बोरा भी बिछाया गया है और यहां पे केतारी रखा गया है।

यह एक रूम है रूम का दीवार नीला है रूम में टेबुल रखा गया--

रूम के दीवार में पोस्टर भी चिपकाया गया है।

और यहां पर बाउंड्री मारा गया और लोहा से मारा गया है।

खिड़की में सीसा भी लगाया गया है और बाहर में बाउंड्री मारा गया है।

और बाहर में हरा हरा घास भी दिखाई दे रहा है और यहां पे बहुत सारा पेड़ पौधा है।

और रूम में काउंटर बनाया गया है और काउंटर में बहुत सारा सामान रखा गया है।

यह एक गेट है गेट को पीला रंग से पेंट किया गया है और यहां पे बाउंड्री भी मारा गया है।

पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ में हरा हरा पत्ता है और यहां पे बहुत सारा जमीन में--